ये कुछ इंग्लिश कि उर्दू में लिखा हुआ है शायद यह कुछ ऐसा है जैसे कि यहां पे आसपास आदमी खड़े हुए हैं और जालीदार गेट लगे हुए हैं।

जिसमें कुछ लोग बहुत से लोग है बहुत भीड़ लगी हुई है लाइन लाइन चल रही है।